ये सारे लेज कुरकुरे हॉर्लिक्स मैगी वगैरह की पैकेट टंगी हुई दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर के बेंच भी लगे हुए हैं चेयर दिखाई दे रहे हैं ।

एक दरवाजा भी नजर आ रहा है।

सामने मिरर लगे हुए हैं ।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

जहां पे बहुत सारे आदमी चेयर लगा करके बैठे हुए हैं।

इस दृश्य में बस स्टैंड की तस्वीर दिखाई दे रही है।

दो दरवाजे नजर आ रहे हैं दो खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

वह वे ब्लैक कलर की है।

इसकी दीवार पे एक बैनर लगी हुई है।

इस दृश्य में मछली की दुकान दिखाई दे रही है।

चप्पल दिखाई दे रहा है।